हमे यहाँ पर एक पार्क दिखाई दे रही है यहाँ पर बहोत सारे पेड़-पौधे हैं और लाइट भी लगी हुई है।

हमे यहाँ पर बड़ा-सा मैदान दिखाई दे रहा है और एक बहुत बड़ा कछुआ भी है जो की बहुत --

और एक गाड़ी एक कार भी दिखाई दे रही हैऔर हमे कुछ लोग बाहर भी दिखाई दे रहे हैं।